बोहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है हरे भरे बोहोत सारे पेड़ है।

और उसके साइड में ग्रीन चटनी रखी हुई है दो स्पून रखी हुई है और जो प्लेट रखी हुई है वो डेकोरेट किया गया है उसको और जो प्लेट है वो ब्लैक की है और वो एक टेबल पे एक--

मुझे यहां दो लड़के दिखाई दे रहे है जो की--

जो की एक मैन की पैर में कुछ ट्रीटमेंट कर रहा है और मैन ले बेड पर लेटा हुआ है और एक खिड़की दिखाई दे रही है जो की रेड --